यहां पे हाई हाई हाई लेवे है हाईवे है।

यहां पे छोले भटूरे पनीर छोले सब कुछ मिल सकता हैं।

यहां पे लिखा हुआ है ए कंपलीट फूड स्टैंड के सेंटर है ये।

और बहुत अच्छा देख रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

ये दो पहाड़ है उन दो पहाड़ों के बीच एक आदमी है एक औरत है अ एक आदमी बैठा खड़ा हुआ है औरत बैठी हुई है।

मकान सा बना हुआ है ये तलिया झील है यहां पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे--

और यहां पे होटल है यहां पे--

ये मछलियों को पकड़ रहा है।

यहां पे बहुत सारी मछलियां हैं।

मछली सारी सफेद सफेद दिख रही हैं।

यहां पे गाड़ियां ही गाडा गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां पे वरिष्ठ मेरी फ़िक्सन भी लिखा हुआ है यहां स्कूल और स्कूल कोलोफ कोलोफ म्यूजिक लिखा हुआ है।

और यहां एल_सी_डी लगी हुई है।

यहां पे ए_सी भी लगी हुई है यहां पर चश्मे भी लगे हुए हैं।

यह एक योगा की क्लास है यहां पे योगा की जा रही है यहां पे लड़कियां--

यहां पे आप देख सकते हो बहोत अच्छा लग रहा है।

ये गुफ़ा है गुफ़ा में आदमी बढ़ रहा है पीछे से एक आदमी फोटो खिंच रहा है इस आदमी ने ब्लैक और--

लिखा हुआ है अरुण राय लिखा हुआ है यहां पे ऑटो दिख रही है बहुत सारी ऑटो चल रही है।

छोटे कपड़े भी बच्चों के बड़े कपड़े भी हैं।

हैंडल रूम लूम भी लिखा हुआ कंबल भी लिखा कंबल ही कंबल लिखा हुआ है।

यहां पे ये जिम है यहां पे जिम के जिन जगह यहां पे--

यहां देख सकते आप बहुत अच्छा दिख रहा है।